यह एक अस्पताल के एक कमरे का चित्र दिखाया गया है जिसमें कि इस कमरे में तीन बेड लगाए गए--

इक इमारत का रंग पीला कलर का है।

इसमें की दो व्यक्ति अपने सिर पर गमला में सीमेंट ढ़ोते हुए जा रहे हैं।

में की यहां पर कई सारे लाइट्स लगाया गया है।

यहां पर सामने में कुछ छोटे छोटे घासें भी लगी हुई है और एक खंभा भी नजर आ रहा है।

यह एक क्लासरूम का चित्र दिखाया गया है जिसमें की इस क्लासरूम कई सारे बच्चे कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

यहां पर एक मिट्टी के खदान को दिखाया गया है।

और यहां कुछ नीले रंग का दो मशीने भी रखी गई है।

और इस इमारत के आसपास में कुछ पेड़ भी लगाया है जिनमें कि खजूर के पेड़ भी हैं।

इस मकान के पास में एक पेड़ भी लगाया गया है।

यहां पर एक बड़ी से चट्टान को दिखाया गया जिसमें कि इस चट्टान से एक छोटी सी झरना बह रही है।

सामने में यहां पर दो वस्तुएं रखी गई है जिसमें कि इनका रंग लाल हरा और कल दिखाई दे रहा--

इन सभी कर्मचारियों ने नारंगी रंग के और टी शर्ट और पैंट पहने हुए हैं।

यहां पर कुर्सी मे बैठे हुए कुछ लोग पिला और लाल रंग के वेश भूषा पहने हुए हैं।

आमने मे यहां दो व्यक्ति खड़े हैं जिसमें की एक व्यक्ति लाठी पकड़े हुए नजर आ रहा है और एक व्यक्ति ऐसे ही खड़ा है।

यह तलाब पुरे चारों ओर घने पेड़ों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है।